ऑफिस है जिसमें पूरा सजाया हुआ है| एक आदमी है जो ऑफिस का काम कर रहा है अपने कम्प्यूटर में और पूरी अच्छी तरह से बैलून से सजाया हुआ है।

बगल में काफी सारे पानी के टैंकर्स है जो पानी आसानी से पेड़ को मिलते रहे और काफी ज्यादा उपज हो जिससे किसान को फायदा हो इस उपज करनेम |